बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं लाइटें लगी हैं जल रही हैं और एक पंखा लगा हुआ है।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

और एक खंभा है जिसमें लाइटें लगी हैं।

बहुत सारे आदमी बैठे हैं।

ऊपर छत पे झंडे और गुब्बाड़े से सजावट हुई है।

हाथ में औजार लिए हुए हैं पीले कलर का।

और एक पंखा दिख लटका है।

एक ग्रीन कलर के कारपेट बिछी हुई है।

एक डाली पड़ी हुई है सुखी--

सामने एक बैनर लगा है नीले कलर का।

इसपे लड़की और लड़के बैठे हैं।

इसमें बहोत सारी मछलियां इस पे रखी हैं छोटी बड़ी।

और गोल्डन व्हाइट कलर का पेंट हुआ है।

पेंट हुआ है क्रीम कलर का पिंक कलर के।

इसमें फर्नीचर की मेज फर्नीचर के दरवाजे हैं।

ये एक टेबल है वाइट कलर का।

बोहोत सारी कुर्सियां रखी हैं।

इसमें बोहोत सारी मोरंग रखी हैं।

कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर छत पर लाइटें लगी है।

ऊपर छत पे लाइटें लगी हुई हैं रंग बिरंगी।

ये एक बैनर लगा हुआ है ग्रीन कलर का इसमें स्टाट बैंक ए_टी_एम लिखा है।

और दीवार में क्रीम कलर का पेंट हुआ है।

इसमें हरी हरी घास निकली हुई है।

जालीदार दीवार बनी हुई है ईट की।

घर में व्हाइट कलर का पेंट हुआ है।

यहीं पे मार्बल बिछा हुआ है।

बहुत सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं।

कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग बैठे हैं बेंच पे।